यह किसी लाइब्रेरी की फोटो है जिसमे बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं| इसमे चैयर है बेंच है पढ़ाई कर ने की और एक तिरंगा लगा हुआ है।

यह किसी शादी हो यह किसी शादी गार्डन की इमेज है जिसमे एक साइड स्टेज तथा कुर्सियाँ रखी हुई हैं ।